यहाॅं पर मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और एक दीवार दिखाई दे रही है जो यलो कलर की है और मल्टी कलर की है।

यहां पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बोहोत सारे बैनर दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू कलर --

और बहुत सारे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और दो लड़कियां दिखाई दे रही है जो साड़ी पहनी हुई हैं।

और कुछ सब्जिया दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है और बहोत सारे नींबू दिखाई दे रहे है जो येलो कलर के है।

यहां पर मुझे बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर के है और येलो कलर के है।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और हल्का ग्रीन कलर का है।

इसमें एक पंखा दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है जो सिल्वर कलर की है और ब्लैक कलर की है।

और कुछ चूड़ियां दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है।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

यहां पर मुझे एक रेस्टोरेंट का बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है और व्हाइट कलर का है।

में गेट दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू कलर के है और एक सीढी दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

और कुछ सोफे दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर के है और कुछ तकिये दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर के है।

और कुछ टेबल दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं और मिट्टी कलर के हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे चट्टानें दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर की है और मिट्टी कलर की है और हल्के ग्रीन कलर की है।

यहां पर मुझे एक बबहुत बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और ब्लू कलर का है और ब्लैक कलर का है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और सीमेंट कलर का है।